यहां पर एक नीली कुर्ती है और उसके सामने--

और एक कुत्ता भी है यहां पर बहुत सारी गायें भी है।

एक बस खड़ी हुई है जिसका दरवाजा खुला हुआ है।

एक बोर्ड पर लिखा हुआ है--

कुछ पत्थर गिरे हुए है।

इस तस्वीर में--

कुछ सामान रखा हुआ है।

यहां पर खुली जगह है।

और पानी और घास--